हर दरवाज़े के सामने दो स्टाम्प लगा हुआ है।

एक स्तम्ब और नीम का पेड़ बोहोत बड़ा सा है।

छद पर जाने के लिए घरस के बगल से सिड़ी का रास्ता --

एक टेबल है टेबल पर गौतम बुद्ध की मूर्ती रखी हुई है और मूर्ती के पीछे--

एक क्लासरूम है जिसमे दो खिड़किया लगी हुई है दो ब्लैक बोर्ड लगे हुए है।

ओह रूट पर एक ऑटो रिक्शा एक बाइक पे जा रहा है।

इसमें छत के ऊपर से निचे तक झालर लगे हुए है बोहोत सारे गुब्बारे लगे हुए है।

और स्तम्ब लगे हुए है लाइट्स लगे हुए है।

यहाँ ग्राउंड है और इसमें बास्केट लगा हुआ है जो काफी उंचाई पर है और उसकी --

और इसमें अः खम्बा लगा हुआ है।

और अन उपजाऊ खेत है और उसके--

कुछ अलग लिपि में लिखा गया है और उसके निचे बोहोत सारे --

अः सीढ़ियों के नीचे टेबल है।

बड़े बड़े पेड़ है और एक केले का पेड़ है।

और उसमे पुजारी जी भी है इसमें दुल्हन माता के पीछे बेकग्राउंड में --

क्रिशन की मूर्ति लगी हुई है बोहोत सारे पंखे लगे हुए है लाइट्स लगी हुई है।

और मेज लगे हुए हैं जिसमें में सारे--

चार सफ़ेद रंग की एक काले रंग की एक लाल रंग की कार खड़ी है लाल --

पर के कार कड़ी है उसके बगल में एक आदमी खड़ा है।

ऐ आसमान भी नीले रंग की दिखाई दे रही है।

और बहोत ही खूबसूरत शोरूम है।

काउंटर रखा हुआ है काउंटर के सामने एक--

छोटी बड़ी मछलिया ले रखा हुआ है लाल रंग के--

और अ सामने बोहोत सारे कस्टमर है मछली खरीदने के लिए--

और उसमे पर्स में लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है मैथ पार्क --

और उसके अगल बगल बड़े बड़े हरे रंग के पेड़ है।

टेबल लगा हुआ है जिसमे है ग्रीन कलर का उसमे पट्टी बिची हुई है।

बोहोत सारे उसमे बॉल्स है पाउडर स्क्रीन मिल्क सब वगेहरा--

एक दुकान है जिसमें एक अ उसका ओनर बैठा हुआ है अ अपने चेयर पर।

अ उस बेच के सामने चेयर रखे हुए है बोर्ड रखे हुए है।

और झाली लगा हुआ है और उस कॉलोनी के सामने--

जी_एस सिरीम्प का फॉर्म है।

और बहोत सारे उसमे रोशनदान है।

उसमे उस कोचिंग सेंटर के नीचे सो--

टॉप के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड बैनर पर लिखा हुआ है एयरटेल --

ओनर उसका काउंटर के अंदर बैठा है।